और कुछ छोटे हरे दिखाई दे रहे है वही आसमान भी साफ नजर आ रहा है और काफी अच्छा--

का छोटा सा पर्वत दिखाई दे रहा है जहां पर काफी सारी चट्टानें नजर आ रही है वह जो पानी की छोटी सी घारा दिखाई दे रही है यह जो पानी जो है वह --

पानी काफी शुद्ध होता है जब ये नदी में जाता है यही पत्थर घिसने से ही पानी की शुद्धता बढ़ जाती है वः एक व्यक्ति दिख रीहा है वह बैठे हुए नजर आ रहे है |